दिखाई दे रहा है सामने किधर है।

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर एक झरना टाइप का बना हुआ दिखा--

जलती हुई दिखाई दे रही है सामने की ओर--

सिंगल सिंगल हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं सामने की--

मुझे इस फोटो में सामने काफी सारे बलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।